ये मॉल के अंदर की पिक्चर है और यहां पर बोहोत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

ये बहुत ही अच्छा होता हैएण्ड इसको बजाने के लिए बहुत ही एक ही लोग रे लगते हैजोकी इनको बजाते।

बहुत सारे लोग है जो इस मॉल मे आते है और जो भी लोग इसके अंदर गए हुए है वो लोग अपना बा-बाइक पार्क किए हुए है बाहर मे---

और ये बहुत ही अच्छा स्टूडियो यहाँ पर बहार मे बैनर पे नंबर भी लिखा हुआ है की अगर किसी को जरूरत हो तो वो कोन्टैक्ट कर सकते हैं।